इस फोटो में मुझे एक बस दिखाई दे रही है।

चित्र में मुझे अलग अलग प्रकार की फ्रूट्स नजर आ रहे हैं।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

उस चित्र में मुझे बहोत सारे बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।

उसके पीछे मुझे एक पर्दा भी लटका हुआ नजर आ रहा है।

इसके पास में मुझे एक बर्तन का स्लॉट भी नजर आ रहा है।

और उसके पास में एक वेट मशीन भी नजर आ रही है।

और एक काली कलर की कार भी दिखाई दे रही है उपर बहोत सारी खिड़कियां नजर आ रही है।

इस चित्र में मुझे अलग अलग प्रकार के बहोत सारे गमले नजर आ रहे है।

चित्र में मुझे बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

डेकोरेशन दिख रहा है जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार के फूल लगे हुए नजर आ रहे हैं।

जिसके पास में कुछ कैमरे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

उसके पास में एक और पुरुष दिख रहा है जो कि बैठा हुआ है उसके पीछे मुझे बहुत सारे सामान भी दिख रहे हैं।

और उसके पास में कुछ साड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं नीचे कुछ थैली भी पड़ी हुई दिखाइ दे रही हैं।

उसके अंदर दो पुरुष भी नजर आ रहे हैं बाहर एक बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस चित्र में मुझे एक कराटे क्लास नजर आ रही है।

ऊपर दो से तीन पंखे लटके हुए भी नजर आ रहे हैं।

जिसके पीछे एक मार्केट दिख रहा है जिसके अंदर बहुत सारे सामान पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

अंदर बहोत सारे सामान पड़े हुए नजर आ रहे हैं।